यहाँ एक बहुत बड़ा ग्राउंड हैजो की बहुत प्यारा है यहां पे एक रोड हैं यहाँ एक रोड पे एक बाइक खड़ी है।

यह एक रेलवे स्टेशन है जो कि यहां पे रेल खड़ी हुई है पटरी पे जहां पे रेलवे के ऊपर लिखा हुआ है इंडियन इंडियन रेल रे-रेलवे ।

यह एक ब्रिज है जो की ब्रिज के निचे बहुत ही निचे और गहरी नदी है | आइड साइड बहुत सारे गार्डन जैसे बने बने पेड़ पौधे है यहाँ --